यहां में बहुत सारा बैलून लोग है।

मछली भी छोटा छोटा से दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा।

और उसके सामने में बहुत गंदा दिखाई दे रहा है।

यहां में दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां में वीवो लिख के दिखाई देता है।

और ओ स्टैचू लोग जो हिंदू लोग का भगवान है।

और यहां में जो दो गाड़ी दिखाई देता है।

और फ्लोर जो बहुत गंदा सा दिखाई देता है।

ये तो फ्लावर लोक का दुकान है।

यहां हमें लाइट से बहुत सुंदर से दिखाई देता है।

यहां मे बॉक्स बॉक्स पे सामान लोग रख के है।

यहां मैं बैंक दिखाई देता है।

और एक लड़का जो अपना गरी देख के दिखाई देता है।

यहां में फ्लैग लोग भी लगते हैं ऊपर में।

यहां में बहुत सारा फ्लॉवरस लोग से डेकोरेट करके दिखाई दे रहा है।

यहाँ ये तो दुकान है।

यहां में बहुत सारा कपड़ा भी है।

कपड़ा भी अलग अलग कलर में है।

यहां में बहुत सारा आदमी लोग आगे दिखाई दे रहा है।

और यहां में इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई देता है।

और यहां गाड़ी तीन फ्लोर जैसा दिख रहा है।

यहां में बैलून भी दिखाई देता हैं।

ये जो एक टाइल्स का फैक्ट्री जैसा दिखाई देता है।

यहां गाड़ी का शिशॉ में देखने से एक आदमी है।

यहां पे नोटिस बोर्ड बराबर के ऊपर में दिखाई दे रहा है।